पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है जंगल पहाड़ दिख रहा है घास फूस भी दिख रहा है।

एक फंक्शन हॉल नजर आ रहा है जिसमे काफी लाइट लगी हुई है और आदमी लोग भी है छे सात।

यहां मुझे दिख रहा है दुकान है लड़किओ का सजने का समान है जहां है ये कांकर है हैयर बैन है रबर बैन है कलरफूल --

लोहा का रॉड दिखाई दे रहा है पानी दिखाई दे रहा है लकड़ी दिखाई दे रहा है और लकड़ी का पटरा है नीचे मे वो दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मुझे तीन बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है फूल दिखाई दे रहा है पन्नी दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है औरत दिखाई दे रहा है झोला है सूरजमुखी फूल है।

मुझे दो लोग दिखाई दे रहे है हाथ में हथोड़ा दिखाई दे रहा है लकड़ी लम्बा सा दिखाई दे रहा है चारों तरफ दीवाल ईंट दिखाई दे रहा है कुछ खोद रहे है छेनी हथोड़ा लेके जैकेट पहने दिख रहा है।

लाइट दिखाई दे रहा है हरे रंग के पर्दे भी दिखाई दे रहे है शूज भी पहने हुए है लोग वो भी दिख रहा है।

यहाँ पे दो औरतें बैठी है सिल्क साड़ी पहन के हाथ मे बिना लिए हुए माईक है ढोलक है एक जेंट्स है लाइट है हालोजिन है पोस्टर लगा हुआ है ब्लू कलर का पर्दा है।

यहां पे बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है एक औरत है सिल्क साड़ी पहनी हुई है और चेयर है ऊमरदार आदमी लोग भी है यहां पे । एक बच्चा औरत ने गोद मे लिया पंखा है लाइट है।

यहाँ पर तेरह चौदह महिलाएं है बीच मे एक लड़का हैझंडा लिया हुआ है पीला और लाल रंग का ब्लू रंग का पीछे पर्दा दिख रहा है महरून कलर का भी है।

कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है रंग बिरंगा पीछे पोस्टर दिख रहा है हाथ दिख रहा है।

यहाँ पे दो बंदे दिखाई दे रहे है और हाथ मे मोबाइल दिखाई दे रहे है पत्थर दिखाई दे रहे है पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है।

लग रहा है कि मछी का बाजार है मछी है प्लास्टिक का गमला है और औरते खड़े है मर्द है मोबाईल-फोन मे कोई बात कर रहे है रंग-बिरंगे कपड़े पहने है।

यह मुझे दिख रहा है तीन जैंट्स दो लेडिज और एक जैंट्स बैठा हुआ है माइक है तार लगा हुआ ऊपर मे लाल रंग का पिंक कलर का कपड़ा है पिंक कलर का रिबन है।